पीछे में गेट देख पा रहे लोहे का बना हुआ है। यहाँ पर एक मैम को देख पा रहे है जिन्होंने ऑरेंज रंग का साड़ी पहना हुआ है च चश्मा पहन ते हैं।

ऊपर हम लोग पहुंचने के लिए एक छोटा बड़ा ब्रिज देख पा रहे हैं नाव में बहोत सारा इंसान को देख पा रहे हैं।

यह रेस्टोरेंट बहोत सारे बैलून देके सजाया हुआ ब्ल्यू और व्हाइट कलर का सीलिंग का कलर व्हाइट है एल_ई_डी लाइट देख पा रहे है तीन हम सी_सी_टी_वी कैमरा देख पा रहे--

जो लकड़ी का बना हुआ है और ब्राउन कलर का है।

हेयर और टेबल दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर और ब्लू कलर के कपड़ों से--

वाटर फ़िल्टर दिखाई दे रहा हैं एक एक्जॉस्ट फैन दिखाई दे रहा हैं।

पोस्टर लगा हुआ है देख पा रहे जिसमें लिखा हुआ है स्टेडीयम ऑस्ट्रेलिया --

यहाँ हम लोग बैठने का जगह देख रहे हैं साइड मैं एक पेड़ दिखाई दे रहा है पिछे मैं--

गेट का बुक रखा हुआ है सीमेंट का बुक रखा हुआ है।